जैसा कि हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि यह एक स्टेज बना हुआ है और इस स्टेज को बहुत अच्छी तरीके से डेकोरेटॆड किया गया है और हमें यहाँ पर एक उम फोटो दिखाई दे रही है जोकि इसमें --

जैसा कि हमें यहाँ दिख रहा है कि यह एक खेत है और एक बकरी बैठी है और कुछ बक --

जैसा कि हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि यह एक प्लेग्राउंड है और इस प्लेग्राउंड में मैच चल रहा है और यहाँ पर --